इस चित्र मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग पर पी.जे. इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तालाब के किनारे पर कुछ घर भी बने हुए दिख रहे है आस-पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखई दे रहे है।

कुछ कुर्सियों पर स्टूडेंट बैठे हुए दिख रहे है एक लैपटॉप रखे हुए दिखाई दे रहे है कुछ पंखे और ए.सी. भी लगे हुए दिख रहे है।

कुछ बिजली के खम्भे भी दिख रहे हैं पेड़ भी लगे हुए दिखई दे रहे हैं।